के दोनों साइड पेड़ लगे है। बड़े-बड़े पेड़ है। झाड़िया है उसमे।

इसमें सब्जिया दिख रही है बहोत सारी जो की डलिया में रखी हुई है।

ऊपर आसमान है जिसमे उजाला दिख रहा है और कलरफुल --

मुझे एक जंगल दिख रहा है। दिख जंगल में--

ये दिवार है जो की ईटों की दिख रही है उसमे एक छोटा गेट भी है जो जाने का रास्ता दिख रहा है पीछे घास है।

और लोहे की रेलिंग भी दिख रही है।